इसमें दो तल्ला नाव है दो तल्ला दिया हुआ है और उसमे छोटी भी नाव दिख रही है बगल में और दूर-दूर तक पानी दिख रही है। बोहोत सारे लोग दिख रहे है पानी बोहोत अच्छा दिख रही है क्लीन जैसा दिख रहा है।